लाइटे लगी है खंभा है और बोले तो डिब्बे रखे है बाल्टियों का कलर सफेद हरा है।

जिनके कलर गुलाबी सफ़ेद है और इस ग्राउंड का कलर पिला हरा है और यहाँ लक--

और घर बने दिख रहे है और टंकी भी बनी है बहुत सारे पेड़ भी है टंकी की कलर पिला है लाल है और इस ग्राउंड का कलर सफ़ेद है।

यहां पर बड़ी सी रोड बनी है डस्टबिन है खंभा लगा है और घर भी बना है घर में छतरा लगा है।